यहाँ फील्ड है जहाँ सब क्रिकेट खेलते है और खेलने की बहुत सारे चीज़ है जहाँ हरियर-हरियर बाग बगीचा है और बहुत सारा --

यहाँ मकान भी बहुत सारा बहुत सारा पेड़-पौधे हैं बहुत सारा फूल है अच्छा अच्छा फूल है और मकान भी बहुत सारा है सड़क भी है और अच्छा-अच्छा चीज़ है।

यहाँ एक बाग़-बगीचा है जहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे है दूर-दूर में मकान बहुत सारे दिखाई दे रहे है हां एक आदमी भी दिखाई दे रहे है खेती करते हुए।

पीला कलर का है एक बड़ा सा खम्बा है जो की बिजली का लग रहा है उसके नीचे तीन सीढ़ी लगी हुई है।